यहां पर माँ लक्ष्मी के पूजा करने बहुत से भक्त आये हैं यहां पर बहुत से भक्त पूजा कर रहें यहाँ पर काफी --

पूजा के सामग्री भी लाये गए हैं।

यहाँ बड़े-बड़े घर भी हैं यहां बहुत से पशु-पछी भी रहते होंगे।

इस घर में काफी बड़ा बरांडा भी है यहां पर बहुत से रेक एवं कुर्शी लगे हुए हैं यहां पर टेबुल भी लगा हुआ है यहां पर तरह-तरह के --

यहाँ से ग्राहक सामना खरीद के घर ले जाते हैं।

यह मंदिर काफी सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत से मुसलमान भाई आये हैं।

इस मैदान में बहुत से बच्चे खेलने आते हैं।